तस्वीर में एक अ मेला लगा हुआ है जिसमें बहुत सारे झूले हैं कुछ चेयरें वगैरा हैं लाल रंग के।

सामने झालमुरी का दुकान है सामने दूध की भी दुकान दिख रही है गुब्बारे वगैरा दिख रहे हैं एक पेड़ भी दिख रहा है।

गोल्डन रंग की शेरवानी पहन के लाल रंग का पैजामा पहन के और पगड़ी है लाल रंग की फूलों की माला पहने हुए हैं सादे और लाल में ।

सामने कुछ टीचर्स हैं कुछ स्टूडेंट्स हैं जोकि एक दूसरे को गिफ्ट वगेरह दे रही है टीचर्स डे मना रही है।

एक आदमी उसे नाहा रहा है पीछे कुछ लोग हैं सामने में एक ब्रिज गया हुआ है।